ओ_पी_डी ऑफिस है यहां पे। बाहर से वाटर के आगे बोर्ड लगाया गया है स्वच्छ भारत अभियान।

ऑटो राइट साइड में भी गाड़ियां ऊपर यहां आदमी खड़ा हुआ है और यहां पर इसका मीनारा भी दिख रहा है और ये ब्लू कलर का गेट भी दिख रहा है यहां पे --

ये एक स्टेज को सजाया गया है। यहां पे येलो कलर का गोल्ड रिंग --